पूरा जमीन बर्फ से घिरा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

पानी जमीन पे एक जगह जमा हो गया है।

साइड में तीन चार साइकल लगी हुई हैं।

इसमें एक वाइट कलर का डेस्क बना हुआ है।

इसमें टिकट काउंटर बने हुए हैं।

दीवाल पर झारखंड दूतगामी वातानुकूलित बस सेवा लिखा हुआ है।

तस्वीर में घर के आगे एक शेड बना हुआ है।

दी गई तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

उसके कोने में एक लेज रखा हुआ है।

टेबल पे बंबू ट्री भी रखा हुआ है।

ऊपर से पूरे शहर का दृश्य साफ नजर आ रहा है ।

बिल्डिंग के सामने दो कार लगी हुई है।

यह बिल्डिंग रांची में स्थित है।

इसके लंबी पूछ बहुत सुंदर दिख रही हैं।